सुंदर तरीके से जचाई हुई नजर आ रही है।

लाल ब्लाइंड स्कूल लिखा हुआ है।

इस फूल के बाहर एक पेड़ है।

तस्वीर एक सेलून की तस्वीर नजर आ रहीं हैं।

इस दुकान का नाम दूध रतन स्वीट्स एंड फास्ट फूड दुकान है।

इस तस्वीर में खिलाड़ी खेलते हुए नजर आ रहे है।

हरे और संतरी रंग के कपड़े पहने हुए हैं इस तस्वीर में एक बहुत बड़ी स्ट्रीट लाइट लगी हुई है।

और येह मैदान काफी बड़ा है।

जिसके बाहर प्लस का साइन है।

पेट्रोल पंप की तस्वीर नजर आ रही--

और एक मोटरसाईकल नजर आ रही है।

यह तस्वीर एक खुले मैदान की तस्वीर नजर आ रही है।